यह एक पार्टी का फोटो है इसमें पार्टी में लोगो बै बैठे हुए हैं | ऐसा लग रहा है जैसे कि बहोत बड़ी पार्टी है यह सीतामडी का है |

ये पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी इलाका में देख रहें हैं नारंगी लाल हरा पीला का ये आसमानी नीला का आसमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक जेंट्स खड़ा है जो वहाँ पर पेड़ भी है हरा-भरा।